c और c ++ में pointers pointers पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
pointers
pointers बनाना
और pointers पर कार्य
हम यह एक उदाहरण के माध्यम से करेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उबंटु operating system version 1110
उबंटु पर gcc और g ++ compiler version 461 का उपयोग कर रहा हूँ
pointers के परिचय के साथ शुरू करें
pointers memory में स्थान इंगित करता है
pointers memory को संचित करता है
यह उस address में संचित value भी देता है
अब pointers पर एक उदाहरण देखें
ध्यान दें हमारा file pointers _ demo c है
अब हम code के माध्यम से चलते हैं
यह हमारी header file stdio h है
यह हमारा main function है
यहाँ हमारे पास value 10 के साथ long integer num है
तो हम एक pointer ptr घोषित करते हैं
ऐस्ट्रिक चिन्ह का उपयोग pointer को घोषित करने के लिए किया जाता है
यह pointer long int के प्रकार को इंगित कर सकता है
statement में एम्प्रसेंड ampersand का उपयोग variable के memory address को रिट्राइव करने के लिए किया जाता है
अतः एम्प्रसेंड num num का memory address देगा
यह statement variable num का address print करेगा
यहाँ पर ptr num के address को संचित करता है
यह statement ptr का address print करेगा
sizeof function ptr का आकार दर्शाएगा
यह is ptr की value देगा
यह num का memory address है
और यहाँ ऐस्ट्रिक ptr address पर value देगा
अतः ऐस्ट्रीक का उपयोग memory address नहीं देगा
इसके बजाय यह value देगा
% ld long int के लिए फार्मेट specifier है
अब program को निष्पादित करें
ctrl alt और t कीज अपने keyboard पर एक साथ दबाकर terminal window खोलें
निष्पादित करने के लिए type करेंgcc space pointers underscore demo dot c space hyphen o space point
enter दबाएँ
type करें dot slash point enter दबाएँ
output प्रदर्शित होता है
num देखते हैं कि num address और ptr value समान है
जबकि num का memory address और ptr भिन्न है
pointer pointer का आकार 8 bytes है
और ptr द्वारा चिन्हित value 10 है जो num को दी गई है
अब समान program c ++ में देखते हैं
ध्यान दें हमारा file pointer underscore demo cpp है
यहाँ हम कुछ परिवर्तन देखते हैं जैसे iostream के रूप में header file
तो हम std namespace का उपयोग कर रहे हैं
और हमारे पास printf function की जगह पर cout function है
बाकी सभी चीजें समान हैं
program को निष्पादित करें अपने terminal पर वापस जाएँ
निष्पादित करने के लिए type करें g ++ space pointers _ demo cpp space hyphen o space point1 enter दबाएँ
type करें dot slash point1 enter दबाएँ
हम देख सकते हैं कि output हमारे c program के समान है
अब इस tutorial के अंत में आ गये हैं
अपनी slide पर वापस आएँ
संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा
pointer pointer के बारे में
pointer pointer बनाना
और pointer pointer पर कार्य
नियतकार्य के रूप में वेरिएबल और pointer प्वॉइंटर को
घोषित करने के लिए एक c और c ++ प्रोग्राम लिखें
variable के address को pointer pointer में संचित करें
और pointer pointer की value print करें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
spoken tutorial project team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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं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
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ
धन्यवाद